जिसमें कि दुकान के आगे स्टैचू लगा हुआ है फ्रॉक पहना हुआ।

नीचे दीवार एक नीचे पूरा एक लगाया हुआ है और सामने जो है एक बोर्ड है।

ये एक गाड़ी धोने वाला दुकान है।